बॉटल से वहां पर बहुत सारी गेट है लकड़ी का गेट ।

काली जी का मंदिर है पीछे बहुत सुन्दर डेकोरेशन है एक शेर भी है राक्षस भी बना हुआ है निचे।

जू दृश्य है जहाँ पे दो मिट्ठू बैठे हुए है तोते ब्लैक कलर के जिनकी चोच लाल कलर की है।

जहाँ पे टेबल एंड चेयर्स है पार्टी होने वाली हैपिंक कलर कॉटन लगे हुए हैऊपर ऑरेंज कलर का परदे लगे हुए है बहुत प्यारा लुक दे रहा है ये।

उठाने वाली गाड़ी भी रखी हुई है घास लगे हुए है।

यह बर्थडे केक है जिसमें हार्ट शेप का रेड कलर के हार्ट शेप बने है एक फ्लोर लगा है।